इधर पंडाल उनडाल है इधर लोहा है।

यहाँ पे ये यहाँ पे औरत महिला पुरुष कुछ कर रहे हैं पहाड़ी इलाका पे --

यहाँ पे दहाड़ आया होगा बाढ़ आया होगा और बगल में सड़क है ।

एमेजॉन का जंगल मुझे देखने मे लग रहा है।

यहां पे साड़ियां-उड़िया कुछ बनते हैं मशीन बहोत सारे हे।

फूल है गार्डन लग रहा है बहुत अच्छा सुंदर --

आए हुए आई.पि.एस. के आई.पि.एस. यु.पि.एस.सी. का शायद यहाँ बुक यहाँ वगेरा --

यहां पे एक ग्रिल लग रहा है लोक रहा है यहां पे हरियाली पेड़ वगैरा --

चालू करके छोड़ दिया है ।

यहाँ पे कुछ फॉर्म वैगेरा भरा जाता है ।